पिंक कलर और सफ़ेद कलर में एक बिल्डिंग नजर आ रही हैं और रोड पर एक लाल कलर की शर्ट पहने एक व्यक्ति सायकल से आ रहा है।

इस चित्र मे मुझे एक मकान नजर आ रहा है मकान भिन्न कलरोसे भरा हुआ है जिसमे मुझे एक हरे कलर दिख रहा है हरे कलर के साथ मे सामने के तरफ मुझे सिल्वर कलर की जाली नज़र आ रही है जाली के नीचे मुझे गुल--

पीछे की और मुझे नीले कलर की कुछ डिज़ाइन बनी हुई दिख रही है पीछे की तरफ एक मकान है और मकान के साइड में मुझे हरी कलर की झाडिया भी दी--

इस दृश्य में मुझे जंगल दिख रहा है जंगल की झाडिया दिख रही है झाड़ियो के सामने मुझे पानी दिख रहा है ठहरा हुआ पानी यहां दिख रहा है उसके साथ ही साथ मुझे ऊपर की और सफेद कलर --

इस दृश्य मे मुझे कुछ कठपुतलिया दिखा रही है वो कठपुतलिया बहुत सारे कठपुतलिया है जिसके साथ मे एक पेड़ भी बना हुआ है ये की एक ब्राउन कलर की कठपुतलिया है जो की मुझे दिख रहा है ये बना के कही पे रखी हुई है।